न्यू कॉमर्स कोचिंग लग रही है और यहाँ पे बड़ा बिल्डिंग है। और यहाँ पे मकान टाइप का लग रहा है किसोरी सर इसमें पढ़ाते है ये कोचिंग लग रहा है और कॉमर्स का ये है कॉमर्स का विद्यार्थी इसमें पढ़ते उरते हैं और ये बड़ा टाइप का लग रहा है और इसमें --